इस फोटो में ईंटों से बनी हुई दीवार दिखाई दे रही है।

इस इमारत के चारों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसके अलावा जहां एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें हरे रंग की घास दिख रही है।

और बहुत सारे खजूर के और दूसरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां नीचे जमीन पर कुछ कांच लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने पैरों में काले रंग के शूज पहन रखे हैं।

इस पेट्रोल पंप के पास कुछ बड़े वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक टेबल और कुर्सी दिखाई दे रहे है।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं यह फोटो दिन के समय का है।

यह फोटो दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक आदमी लोवर और टी_शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

यहां पर लोहे के सरिए से बनी हुई बाउंड्री दिखाई दे रही है।

यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में आकाश दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ा सा काला रंग का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बेड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मार्बल के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आकाश दिखाई दे रहा--

इस पुतले को लाल रंग की शर्ट और एक जींस पहना रखी है।